रोड दिखाई दे रही है रोड़ पर कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। कुछ फोर व्हीलर दिखाई दे रहे हैं। ऑटो --

पीछे पेड़ है। बिल्डिंग सफेद कलर की है। एक बाइक खड़ी हुई है बाइक पर कुछ लोग है ।

हुआ ए । इसके हाथ में फोन है। नीचे फर्श है।

सामने सैलून दिखाई दे रहा है। शीशा लगा हुआ है।

ग्रीन लाइट लगी हुई है। बोहोत सारी पब्लिक है।

एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के नीचे एक लोहे का गेट लगा हुआ है जिसका रंग आसमानी है।

छोटे मंदिरों के शिखर दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है नीले उसमें बादल हैं पेड़ है एक लड़का खड़ा हुआ है।

है दीवाल पर पीले पीलर कलर है शी --

सामने ई रिक्शा खड़े हुए हैं जिन पर फूलो का डेकोरेशन है।

त्थर लेकर जा रहे हैं। एक व्यक्ति वाइट कलर की शर्ट में मोबाइल चला रहे हैं। दीवाल का रंग आसमानी है।